नीचे की ओर टाइलसे लगाई गई हैं आजूबाजू की सारे--

दो से तीन कार खड़ी दिखाई दे रही है आजू बाजू कई सारे--

ना आजू बाजू सामने मुझे छोटा सा एक एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है उस कार मे--

इधर भूरी कलर की बाल्टियां रखी दिखाई दे रही --

कई सारे स्कूली बच्चे बैठे दिखाई स्कूल के बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में सामने कई सारे टीचर है बैठे हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे है उसको स्कूल --

आजू बाजू घूमते भागते हुए दिखाई दे रहे दो लोग ट दिखाई दे--

हरे कलर की लाइटिंग लगाई कई सारे इंसान यहां घूमते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे--

चामुल लागूल रखा हुआ दिखाई दे रहा थाली खानी के लिए--

अलग खिड़की और गेट लगे दिखाई दे रहे है ऊपर की ओर एक पंखा लगाया--

के उपर टाइल्से लगी दिखाई दे रही कई सारे --

पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा आजु-बाजू के सारे हरे-भरे पेड़-पोधै लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने --

मुझे इस फोटो में सामने कि ओर कई सारी हरी भरी घास फुस लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इधर ढाबे वाबे बने हुए दिखाई दे रहैं हैं आजु-बाजु घूमते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।

फ्लावर्स फ्लावर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आजू बाजू कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

व्हाइट कलर की दिवाले पुती हुई दिखाई दे रही हैं।

फिजी वाला से पुती हुई दिखाई दे घर बने--

एक घड़ी दिखाई दे रही सामने एक लोहे की पत्ती रखी हैं बिछी हुई दिखाई दे रही हैं घूमता हुआ दिखाई दे रहा है।